यह एक बड़ी बिल्डिंग है।

इस फोटो में एक ऑटो दिख रहा है सामने की तरफ जिसमें कुछ लोग सवार हुए हैं।

यह एक रॉयल इनफील्ड का गैराज है।

बगल में ही एक ऑटो भी दिख रहा है जो की हरे रंग का है।

एक व्यक्ति जो कि लाल कलर का कपड़ा पहना है एक ने नारंगी का और एक ने हरे कलर का पहना है।

सामने की तरफ एक औरत गुजर रही हैं।

पीछे एक औरत अपनी दुकान में सब्जियां बेच रही हैं और पीछे की तरफ एक और औरत बैठी हुई हैं।

गेट शीशे से लगा हुआ है।

जिसमें वीवो के फोन लगे हुए हैं।

यह फोटो एक प्लेटिंग ग्राउंड का है।

और एक रनिंग ट्रैक भी है।

यह फोटो मवैया मेट्रो स्टेशन का है।

यह फोटो एक मंदिर का है जिसमें दो पुजारी बैठे हुए है।

सामने की तरफ एक डंडे में चुन्नी लटकी हुई है।

यह फोटो एक स्कूल के ग्राउंड का है।

यूनाइटेड बैंक का शाखा भी है।

ग्राउंड की ओर देख रही है पीछे की तरफ एक बड़ा सा पेड़ है और सामने--

पीले कलर के दिख रहे हैं कुछ लाल और कुछ नारंगी --

गौतम बुद्ध की मूर्ति भी बनी हुई है।

यह फोटो एक मार्केट का है।